लाल कलर का पेंट हुआ है खंबों पर।

पीलें रंग का पेंट है। सामने बिजली का बोर्ड है।

साइड में टायर ब्लैक कलर का लगा हुआ है। ऊपर खंभा लगा हुआ है।

बिछा हुआ है ब्लू येल्लो ग्रीन --

बॉक्स रखा हुआ है। अंकल है। सामने प्लेट है।

कोको -कोला है पेप्सी हैं।

के ऊपर बैनर लगा है एस.बी.आई ए.टी.एम. का।

डब्बे है डब्बे में टॉफी है बिस --